घर जो वाइट कलर से पेंट किए है।

यहां में एक घर दिखा रहा है और ये घर जो तीन फ्लोर का है।

यहां में एक नोटिस बोर्ड दिखा रहा है जो बी टी म हॉस्पिटल का नोटिस बोर्ड --

हॉस्पिटल को दिखा रहा है।

रेस्टोरेंट का नाम के_एफ_सी रेस्टोरेंट है।

यहां पर हम लोग अपने दरवाजे पर लगाते हैं और--

जगल और साइड में वॉल से बंद किया गया है।

अपना हाथ पॉकेट में घुसा के अपना फोटो खिंचवा रहा है।

और ये पूरा स्टेज का डिजाइन जो ब्लू कलर से डिजाइन किया गया है।

ये मछली है जो नदी में पाया जाता है।